एक सुंदर और आकर्षित फोटो है जो एक फोटोग्राफर द्वारा ली गई है।

यह फोटो दर्शाती है की एक भव्य दृश्य जो बहुत सारे पेड़ों एवं हिरणो के द्वारा को एक साथ एकत्रित कर के बनाया जाता है।